यहाँ एक अमरूद दिखाई दे रहा है जो किसी ने पकड़ा हुआ है।

ये फोटो कोई रेस्टोरेन्ट की नजर आ रही है जहाँ दो प्लेट्स में कुछ खाना रखा गया है और आस-पास काफी --

और आस-पास कुछ इमारतें भी नजर आ रही है।